इस पर एक सफेद कलर की प्लेट रखी हुई है जिसमें आइसक्रीम रखी है।

कुछ सामान रखा हुआ है और नीचे सफेद कलर की टाइल्स बिछी हुई हैं।

इस फोटो में एक बार्बर की दुकान दिखाई गई है जिसमें एक लड़का बैठा है।

साइडो में एक पेड़ खड़ा है और इसके पीछे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं।

इस फोटो के अंदर एक शादी का मंडप दिखाया गया है जिसमें बहोत सारी झालर लगी हुईं हैं।

नीचे एक टेंट लगा हुआ है जो जिसपर पिंक कलर का टेंट है।

केक भी रखी हुई है गैस लगी हुई है और एक मैकबुक रखी है नीचे दो स्टूल पड़े हुए हैं।

छत पर एक पंखा चल रहा है। कुछ लाइट ल लगी हुई हैं। पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें दो आदमी दिखाई दे रहे है।

इस पर एक परात पड़ी हुई है और एक सफेद कलर का कट्टा है।

कुछ बिजली के खंभे खड़े हैं ऊपर बिजली की तार दिखाई दे रही है।

नीले कलर का है कुछ कटै पड़े हुए हैं ऊपर कुछ लोहे की गार्डर लगे हुए है।

साइड में एक पिलर खड़ा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

ये कुछ जिम के इक्विपमेंट रखे हुए हैं कुछ जिम की मशीन रखी हुई है और डंबल पड़े हुए हैं।

और एक लड़के ने हाथ में कुछ फाइल लि हुई है फीता लिया हुआ है।

और दो लड़कियां जिनके नीचे एक ही पिंक कलर कि मैट बिछी हुई है।

पीछे परदे टंगे हुए हैं पीले कलर के।

और डिजाइन के साइडो में तो परदे लगे हुए हैं।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

इस फोटो के अंदर एक रोड दिखाई गई है जिस पर एक गाड़ी कल खड़ी है जो सफेद कलर की है।

और एक जीना है जिस पर एक रेलिंग लगी हुई है जो स्टील की है।

जिन में पाइप रखे हुए हैं और कुछ बड़े पाइप खड़े हैं दीवार से लगकर।

इस फोटो में एक लोहे की दुकान दिखाई गई है।